और फिर वॉल में भी बहुत सारी छोटी छोटी कुछ है।

उसी की पानी बोतल और फिर कुछ फिल्टर सब दिखाई दे पा रहा है।

और इस घर में बहुत सारे टेबल और चेयर भी रखा हुआ है।

उसी वाल में कुछ लाइट भी लगा के दिखाई दे पा रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बुद्धिस्ट के स्टैचू लगाके देख पा रहा है।

वो भी इस घर के ऊपर में भी कुछ देख पा रहा है।

और फिर एक इंसान पानी के अंदर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में लेबर लोग छत ढलाई करते हुई दिखाई दे पा रहा है।

सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं।

और फिर ये इस घर की दूसरी साइड में भी एक छोटी सी घर देख पा रहा है।

और गाड़ी में उड़ने के लिए भी कुछ बनाया हुआ दिखाई दे पा रहा है।

क्योंकि लड़की लोग पूरी साड़ी पहन के दिखाई दे पा रहा है।

और उसके पीछे में भी आईडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

फ्रिज के अंदर में चार आदमी बैठा हुआ दिखाई दे पा रहा है।

एक लड़का बाइक साइकिल को टेस्टिंग करके देख रहा है।

और उसके पीछे में एक लड़का गिटर पकड़ के भी दिख पा रखा है।

इस घर के उप बाहर में बहुत सारे सामान सब रखा हुआ हैं।

बड़ा सा कुछ लगा हुआ है।

फिर हमें कुछ रोप सब भी दिखाई दे पा है।

मुझे इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

और इसके अंदर में बहुत सारी चेयर भी रखा हुआ है।

कोने में सी_सी कैमरा भी दिखाई दे पा रहा है।

महात्मा गांधी सब दिखाई दे रहा है।

और फिर लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

यह एक सफेद कलर का घर भी देख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में दुकान दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक बड़ी सी टेबल भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में आदमी लोग जहाज में चढते हुए दिखाई दे रहा है।

और इस शिप को कुछ से बांध के रखा हुआ है।

एक ऊपर में व्हाइट कलर की कुछ लटका कर भी दिखाई दे पा रहा है।

फिर ऊपर में बहुत सारे लाइटें भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर बहुत सारी टायर दिखाई दे रहा है।

जिसमें बढ़िया सी मिलाकर भी दिखाई दे रहा है।

और ये छोटे छोटे टेंट भी लगाके देख पा रहा है।

काफी अंदर में कुछ छोटी छोटी चेयर भी दिखाई दे रहा है।